जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं।

एक जेंट्स है जो खड़ा हुआ है।

यहां पर एक खिड़की दिखाई दे रही है|

मे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। जिस पर लिखा हुआ है सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी ।

पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

साइड में टेंट लगा हुआ है।

टोपा रखा हुआ है सजा हुआ बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

जोकि डांस करती हुई दिखाई दे रही है पीछे।

यहां पे इस पिक्चर में शॉप दिखाई दे रहीं हैं दो।